सामने एक पुराना सा मंदरी दिख रहा है जो सफेद कलर का है और जिसकी लाल कलर के है और ऊपर जो--

दोनों साइड कुछ पेड़ लगे हुए है पीछे भी बहुत से पेड़ लगे हुए है सामने जगह है जिसका कलर --

एक बड़ा -सा झंडा दिख रहा है जिसमे ऊपर से पानी गिर रहा है जो सफ़ेद दिख --

पत्थर से ऊपर पानी नीचे गिर रहा है पत्थर का --

सफ़ेद और पिंक हरे बिल्डिंग दिख रही है जो गोल है।

कत्था कलर की है सफ़ेद नेम प्लेट लगी ।--

कोई एक दो लड़के - लड़का और एक औरत छिपी हुई है कुछ खाने की फोटो --

ऊपर एक काला टब रखा हुआ है और एक बड़ी-सी मछली डली हुई है पीछे एक ऑटो रिक्शे दिख र--

हरी और पिली घास दिख रही है और दोनों साइड में सारे पेड़े लगे हुए है।

ये सामने एक किरण मशीन दिखी रही है जो पीले कलर की है जिस --

एक गड्डे मे है बहोत गेहरा गड्ड हैं जिसके अंदर लाल मिट्टी दिख रही हैंऔर कुछ छोटे-छोटे पत्थर--

काली कुर्सी दिखी रही है ऊपर --

सामने एक घर है है जो सफेद कलर का है और जिसमें बीच में पीली पट्टीयाँ बनी हुई है ऊपर --

सामने एक हॉल है जिसमे एक बड़ी-सी टेबल रखी हुई है जो ऊपर से सफेद निचे कत्था है।